चित्र के अंदर हमें नेचर प्रकृति का बहोत खूबसूरत सा दृश्य दिखाई दे रहा है सामने से बहोत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहे है नदी भी दिखाए दे रही जो छोटी सी है।

के अंदर हमें बड़ी सारी नदी दिखाई दे रही है बड़ा सारा दो बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है जो काले रंग के चौड़े जिनपे दिखाई दे रहे है।